यहाँ से दो तीन फ्लोर का बिल्डिंग जैसा घर हैं काँच का बहुत सारे काँच लगे हुए --

तुलसी का पेड़ है झंडा लगा हुआ बजरंग दल का झंडा लगा हुआ --

पे एक पोस्टर लगा हुआ है हरियाली है थोड़ा टाइप है और--